और पूजा करना चाहिए मंदिर में सुबह सुबह और यह मंदिर बहुत बड़ा है अच्छा है मंदिर--

और रेस्ट करता है कोंई रात को फस जाता है तो यही रह जाता है तो कोंई चैन से चढ़ नहीं पाया अच्छा ऐसे --

देखिए बेड में पेपर रखा हुआ है देखिए बैग है।